इसका नाम विशाखा डेरी पार्लर है।

बड़ा एक बड़ा सा सोसायटी का का मैदान एक बड़ा सा सोसायटी का खेलने का मैदान जो कि जो कि गर्मियों के मौसम में फ़ोटो जिसका फ़ोटो गर्मियों के मौसम में लिया गया है |

का एक नजारा छठ घाट का एक नजारा जहाँ पे कुछ व्रती लोग अपने-अपने पूर्वजों को याद कर अपने-अपने पूर्वजों को याद कर रहे है और कुछ --

यह बस ब- ब्लू कलर की है और इसमें साफ और नयी बस लग रही है।

एक सर्विस सेंटर या एयरटेल का एक स्टोर जहां पे लोग एयरटेल से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करते है।

यहाँ अपने खोये हुए सिम को या फिर नए सिम को निकलवाते हैं। यह एयरटेल का एक स्टोर है।

और एक उस मकान घर का मालिक जो की ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट ऊपर नीली शर्ट पहने हुए --

कुछ कारीगर अब फोन पे लगे हुए फोन पे लगे हुए है कुछ कारीगर।